दूर में बहुत सारा पेड़ पौधा है।

ये फ्रिज अलग अलग कलर का है।

रूम का अंदर में दो आदमी है।

ये रूम का कलर को व्हाइट से पेंट करके है।

दुकान का अंदर में दो लाइट जलके है।

ये दुकान का अंदर को व्हाइट कलर से पेंट करके है।

नीचे जमीन पर दो आदमी बैठा हुआ है।

कैफे का बाहर पेड़ में डिस्को लाइट लगाया हुआ है।

कार का डीलर है।

बाहर में लाइन लाइन से लाइट लगाके हैं।

नदी किनारे बहुत सारा घर है।

बालकनी में गैस सिलेंडर रखा हुआ है।

ए_टी_म का ऊपर भी स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

मछली का नीचे साइड में बहुत सारा थर्मोकोल रखा हुआ है।

ये फोटो में एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है।

अर्श के बाहर बहुत सारा आदमी है।

यहां एक स्कूटी और दो बाइक है।

साइड में बहुत सारा स्ट्रीट लाइट भी लगाया हुआ है।

दूर में एक बरा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बाहर में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर बहुत सारा चक्कल है।

चारों तरफ बादल भी बिखरा हुआ है।

ये फोटो में एक आदमी काम कर रहा है।

मिट्टी का ऊपर में इंटा और रखा हुआ है।

इ फोटो में बहुत सारा स्कूल दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर में छोटा छोटा पेड़ निकल के है।